यहां पर एक बिल्डिंग है जिस पर ग्रीन कलर हो रखा हैं और व्हाइट कलर हो रहा है।

यहाँ पर बहुत सारी दुकाने हैं और बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं और कारे खड़ी हुई हैं।

एक बहुत बड़ा टॉवर दिखाई दे रहा है।

एक कार खड़ी हुई है वाइट कलर की और बस में बहोत सारी विंडोज है घर में बहोत सारी विंडो है।

यहाँ पर एक वाइट कलर का हॉल है जिसपे बहुत सारी चेयर रखी हुई है और उनसे येलो कलर का एक कपड़ा बंधा हुआ है।

और हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बड़े-बड़े पेड़ पौधे है और कुछ चेयर लगी हुई है।

यहाँ पर हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसपे बहोत सारे पत्ते गिरे हुए है ।

और बाहर रेड कलर के कपड़े से कपड़ा लगा हुआ है और माला ऑरेंज कलर की है येल्लो कलर की है।